जहां बहुत सारी महिला और एक जेंट्स है।

यहां पहाड़ के बीच से रास्ता है ।

घर के पीछे भी एक व्हाइट कलर का लाइट जल रहा है घर के पीछे बहुत सारे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

जहां लिखा हुआ है के सी रॉय मेमोरियल हॉस्पिटल --

यह एक टैंक का दृश्य है।

जहां पे लिखा हुआ है इल बी देयर फॉर यू ।

यहां पे बहुत सारे कपड़े टंगे हुए हैं।

सामने एक शीशा भी लगा हुआ है जिसका फ्रेमिंग किया हुआ है गोल्डन कलर से।

सामने एक बंडी टंगा हुआ है रेड कलर का।

उसके बगल में रेड से कुछ लिखा हुआ है।

सामने एक हाफ गंजी पहने कंधा पे शर्ट को लपटे हुए हैं।

यह एक बिल्डिंग के बाहर के दृश्य है।

बगल में एक प्याज भी रखा हुआ बहुत सारा।

सामने कुछ बैठे हुए हैं आदमी।

सामने एक खिड़की है जिसपे प्लास्टिक मारा हुआ है।

यहां बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है।

उसके बगल में ईंटे से बने हुए बीच में कुछ रखा हुआ है वाइट कलर का ।

यह एक पार्क का दृश्य है।